ये पलोट है जिसमें छोटे-छोटे पेड़ खड़े हैं। एक स्टील ग्रिल लगी हुई है।

ये एक प्लांट है जिसमें सूर्य ऊर्जा लाइट की प्लेट लगी हुई है।

ये एक बर्तनों की दुकान है।

देखिए जो आप देख रहे हैं ये एक बहोत पुराना महल है।

ऊपर एक मछली है और एक बिच्छू है।

इसके पास तीन लोग खड़े हैं।